लाइट दिखाई दे रही है। शटर बंद दिखाई दे रहा है।

सब कुछ ऐसे ही से लगा हुआ दिखाई दे रहा है काजू बादाम के पैकेट दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहे है सामने बादल दिखाई दे रहे है सा--

सामने विद्यालय दिखाई दे रहा है विद्यालय सेक्टर तीस का है उसमें गांधीनगर का है।

और आस पास बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है सभी--

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रे है सामने एक बड़ा सा पर्वत दिखाई दे रा है।

कुत्ते दिखाई दे रहे हैं मैं एसी भी लगे हुवे दिखाई दे रहे हैं। पिछे लो--

साहब जो दरवाजे पर खड़े होकर कुछ बोल रहे है उसके--

एक मकान बनता हुवा दिख रहा हैं।

मकान के बाहर तीन चार लोग काम कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं।

एक आइसक्रीम की दुकान दिख रही है आइसक्रीम की दुकान में काफी सारे पेकेट भी--

प्ले रखने के कार्ड भी दिखाई दे रहे हैं बलोच भी दिखाई दे रहे हैं और सफेद पेंट दिखा हुआ--

और काफी सारे पोस्टर भी लगे हुए--

सही से रखी हुई है पीछे को फ्रिज भी दिखाई दे रहा है एक लड़की दिखाई दे रही है जो मास्क पहने हुए दिखाई दे रही है।

बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं और मार्केट में एक बच्चा भी दि--

और एक गाड़ी सबसे उपल ऊंची की गई दिखाई दे रही है सभी पर पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास में ही एक छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक चीज दिखाई दे रही है दो गाड़ियां भी दिखाई दे रही है एक एक्टिवा उसके बीच में दिखाई दे रही है।

सफेद रंग के मंदिर में रखे हुए तीन भगवान है।

और साइड में एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।